घर के छत पर छोटा सा कुछ लगा गार्डेन में सूखे पत्ते भी पड़े हुए हैं।

नीचे कुछ सामान मुंडा हुआ पनी से बगल में बोर्ड लगी हुई दिखाई दे रहे है।

बाइक दिखाई दे रही है एक सूर्य ऊर्जा खम्भा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं तख्ता दिखाई दे रहा एक लौटा दिखाई दे रहा है लकड़ी लगे हुए है कुछ।

अलग-अलग उसमें प्याज आलू रखे हुए हैं लहसन रखे हुए हैं।

एक घर दिखाई दे रहा है उसके पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

एक घर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर पीले कलर की पन्नी लगी हुई है सारी।

यहां पे लोहे के अलग अलग सामान पड़े हुए हैं पत्ती पड़ी हुई है।

बगल में इलेक्ट्रिक बोर्ड दिखाई दे रहा है टेलीफोन भी रखा हुआ है।

पोस्टर लगे हुए हैं बगल में लोहे का कुछ रखा है झड़ने वाला--